फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उसके लिये एक आदमी बाहर खड़ा होके बात कर रहा है।

--और सूरज निकला हुआ है और सुंदर सा लग रहा है हमको देखने में और हरा-भरा पार्क हैं देखने लायक--

यह एक दीवाल है दीवाल पे एक मान चित्र सा बना हुआ है यहाँसे वहा तक लोग ये कर रहा है बैठा हुआ है।

--और पूल पे को जो है यहाँ से वहाँ तक गैटिंग के लिए सीमेंट का ढलाई करके बनाया गया है खम्भा यहाँ से वहाँ से सबको जोड़ा गया है।